यहाँ पर एक बिल्डिंग नजर आ रही है जो पिंक कलर की दिख रही है काफी सारे वहाँ पर कार जो है पार्क किए गए है इनमें कुछ पीले कलर के है कुछ वाइट कलर के है कुछ कवर्ड है कार्स से और वहाँ पर काफी हरे पेड़ नजर आ रहे है और जो वल कम्पाउंड है वो हरे रंग का दिखाई दे रहा है।

जो बीच में है वो वहा पर वह मना रहे है उत्सव और काफी बगीचा बड़ा नजर आ रहा है हरे पड़े दिख रहे है आसमान भी साफ नजर--